ए.टी.एम. ब्रांच दिख रहा है जो कि आई.डी.बी.आई. बैंक का है यहां पे अंदर बहुत सारे लोग है और बाहर भी है।

इस रूम के सामने पायदान रखा --

ऑफिस लग रहा है यहां पे कुर्सियाँ लागि हुई है सबके टेबल के सामने ओर यहां रेड कलर की चार कुर्सियाँ लागि हुई है।

यहाँ एक क्लिनिक दिख रहा है जिसका नाम पॉपुलर हार्ट क्लिनिक है।